एक दगाल मै लोग खेलता कुदता।

सामान है मशिन का--

एक अद्मि हथ मै लेकर दिख रहे है!

ऊपर में कंडेंसर लगा है तीन गो तार लगा है।